कोई चियर लाल रंग की हरे रंग की और ब्लू कलर की हैं।

एक बिल्डिंग पर ब्लू एंड व्हाइट कलर किया हुआ है।

टे सभी टेबल्स और चेयर जो है वो --

इस तस्वीर मे एक टेबल पर।

जिस पर लिखा है सेनेटाइज योर स्माटफोन ।

काफी सारा जो है वो खाने का सामान दिखाई दे रहा है।

और आगे जो है मार्केट दिख रही है।

लाल रंग की चेयर बाहर लगी हुई हैं।

एक हॉल दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ बच्चे जो है वो--

पीछे जो है एक नहर की तरह दिखाई दे रहा है।

जिनके सामने जो है वो काफी चौड़ा जो है वो ग्राउंड जैसा दिख रहा है जिस पर--